चित्र मजी माला छन दिखाईं कई तरह की माला छन जो म जन एक माला पर पीले रंग का फूल छन लग्यां यन फूल उत्तराखंड की वादियों मजी बहुत उपास्थि रोदन।

इमारत देखिक यन लगदु की व तीन या चार मंजिल की वली जूं सीमेंट सी अर रेता सी बणी च।

यख मा जी कई सारा लोग पालती मारी योगा छन कन लग्यां या ध्यान मुद्रा छन कन लग्यां।

यमु जी एक काउंटर छ दिख्यंण लग्युं जे फेर तीन या चार खाना छन हर एक खाना पर अलग रंग की अर अलग अलग स्वाद का अनुसार मिठे छन रखीं।

ईमारत क और भेर तम्बू क ऊ छीन लाग्यां बांस का डंडा खड़ा छीन करियां ठीक ईमारत खड़ी एक गाडी सड़क भी मजूद छ।

ये एक ढोखरा कु दृश्या छा जु बहोत बड़ु ढोखरु छ ये ढोखरु मा जी पत्तागोबी की खेती करी छा।

दुकानि मा जी छन ये लाग्यां और लाखड़ा का खांचो का भितर छन रख्यां |